दो वरमालाए दिखाई दे रही है।

और आ आजु-बाजु में आ--

बाजु में एक छोटा-सा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर बाहर सारे दुकाने भी दिखाई दे रही है।

महिला खड़ी हुई दिखाई दे रहे है।

अ वह दो आदमी आ दिखाई दे रहे है।

और गार्डन में कुंडियों में--

फूलों की माला से पक्की सजी हुई दिखाई दे रही है।

गड्डिया खड़ी हुई है और बाजु में एक--

कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

अ गाड़ी ए गड्डी जाती हुई दिखाई दे रही और एक --

और आ कुछ पडीके अभी भी दिखाई दे रहै है।

यहाँ एक पुरूषों की कपड़ों की दुकान अ है और दुकान में बहुत सारे टी_शर्ट लटके हुए हैं।

और ओ दुकान के बाहर दो--

टी_वी की छत्ती भी दिखाई दे रही है।

और लाइट्स भी लगे हुए है आजु-बाजु में बहुत--

यहाँ एक मैदान है और मैदान में दो रो --

आजु बाजु में बहुत सारे दुकाने भी दिखाई दे रही है।

यह एक गैदरीन चल रही है और गैदरीन में--